सामने के साइड एक बोर्ड लगा है।

ब्लैक कलर की दोनों साइड विंडो हैं।

रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की खड़ी है।

अंदर की साइड एक फैन भी है।

यह एक प्रोग्राम हो रहा है।

तथा साइड में एक स्टूल है।

वो जो इंसान ऊपर सेकंड फ्लोर --